कुछ गाड़ियां रखी हुई हैं।

बहुत सारे रिक्शा रखे हुए हैं।

जैसा कि मैं यहां देख सकता हूं यहां काफी सारे ढोल--

जैसा कि मैं यह देख सकती हूं यह एक--

जैसा कि मैं यहां देख सकता हूं यहां--

जैसा कि मैं यहां देख सकता हूं यहां काफी लोग खड़े हुए हैं।

जैसा कि मैं यहां देख सकता हूं यहां पानी भरा हुआ है।

जैसे कि मैं यहां देख सकता हूं यहां--

जैसे कि मैं यहाँ देख सकता हूं यहाँ एक फूल--

जैसे कि मैं यहां देख सकता हूं यहां तो व्यक्ति बैठे हुए हैं।

जैसा कि मैं यहां देख सकता हूंयहाँ--

जैसे कि मैं यहां देख सकता हूं यहां काफी सारी--

पीने की चीजें रखी हुई हैं।

जैसा कि मैं यहां देख सकता हूं यहां कुछ साइकिल खड़ी हुई है।

जैसा कि मैं यहां देख सकता हूं यहां बस खड़ी हुई है।

जैसा कि मैं यहां देख सकता हूं यहां कुछ केन रखी हुई है।

जैसा कि मैं यहां देख सकता हूं यह एक दुकान है।

जैसा कि मैं यहां देख सकता हूं यहां एक--